यहाँ टप है मछली रखा हुआ है और खरीदी बिक्री हो रहा है इधर वो साइड में भी मछली खरीदी हो रहा है।

दो पेड़ है और उधर एक खंबा और एक मिट्टी का घर है खप्पर बांस वगेरा सब है इधर--

और ये बैनर लगा है जिसमें विवेकानंद उद्द्यान लिखा हुआ है।

--और इधर बिल्डिंग उल्डिंग का शायद काम चलता होगा और उधर अंदर मे एक इंसान झाँक रहा है जाते हुए।

इंसान लोग खड़े हुए हैं शायद ये बहुत बड़ी जगह है शायद ये रोड एरोप्लेन रुकने के लिए ही बनाया गया है।

यहाँ बिल्डिंग है।

--और ऊपर मे भी वो बास ऊस का काम चल रहा है और ये इधर दरवाजे मे कोई खड़े है एक इंसान--

यहाँ से मैच का मज़ा लेते हुए काफी अच्छा है शायद ये क्रिकेट खेल रहे है उधर एक इंसान खड़ा हुआ है आस पास घेरा लगा हुआ है।

शायद स्कूल है यहाँ पस ये खाली ग्राउन्ड लोग खेल रहे है यहाँ पर।

ये घर है तीन तल्ला वाला यहाँ कुछ शायद बैंको का काम होता है घर मे और ये टाइल्स विल्स बिछा हुआ है।

और भी वो शायद उधर भी घेरा लगा हुआ है साइड में राइट लेफ्ट साइड ।

कलर का वहाँ शायद कुछ होता है वहाँ और वो इंसान खड़ा हुआ है दूर से ही दिख रहा है।

ये सामने गेट उट गेट है इधर अंदर जाते है पेड़ ह लंबा लंबा पेड़ सब है।

उधर अंदर मे घर है ये रोड है इधर घेरा वेरा लगा हुआ है साइड मे ब्लू कलर का ये घेरा भी अच्छा दिख रहा है काफी यहाँ--